उसके आसपास पेशेंट बैठे हैं।

जिसमें लिखा है दिल्ली ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ।

इसमें कुछ पिंजरे में कुछ पछी दिखाई दे रहे हैं।

और एक मैना भी दिख रही हैं जो--